सामने जगली पर कपड़े टंगे हुए हैं।

बस है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक बंदा उसके पास खड़ा हुआ है पीछे।

अंदर नील के गेट लगे हुए हैं।

कलर की दीवार है गुलाबी कलर की पट्टी लगी हुई है।

छोटा छोटा घास भी लगा हुआ है सामने एक बिल्डिंग भी है कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए--

यह एक पार्क है पार्क के पास कुछ चित्र लग रहे हैं पर्दे पर--

पीछे पेड़ लगे हुए हैं नीचे एक छोटे छोटे गमले भी लगे हुए--

पीछे कुछ छोटे छोटे गमले भी लाल कलर के गमले रखे हैं चित्र भी बना हुआ है इस--

एक महिल उम्म आदमी खड़ा है।

मटर की थैली टंग रही है और छोटा बैट बल्ला टंग रहा है।

पीछे एक आदमी और खड़ा है यह कोई घर या कॉलेज सा है।

यह एक सिंगो वाली एक गाय हैं जिसके चार थन हैं।

समान कुंती पर टंग रहा है सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई--

यह एक पर्दा लगा हुआ है सफेद कलर लाल कलर पीला कलर नीला कलर चॉकलेट इसी का कलर --

यह पीछे चिप्स और कुरकुरे की बोत पैकेट भी रखे पीछे बोतल भी रखी है ठंडे की मरिन्डा की आ एक फोटो भी लगी है।

ये रेड कलर की के बाहर कुर्सी पड़ी है सामने की ओर।

यह एक बाइक की अजेंसी है जिसमें अनेकों प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं।

हरे हरे कलर में कुछ आदमी काम भी कर रहे हैं चित्र के सामने फोटो ले रहे--

एक ट्रे भी धरी है से।

झील है झील के पास कुछ नाव नाव और समान भी पड़ा हुआ है तैर तैरने का।

एस_एस_सी जैसे सेंटर पर यह कपड़े मिलते हैं।

इस पर एक महिला एक आदमी बैठे हैं ऊपर एक एल_ई_डी लगी हुई है।

यह एक फैक्ट्री सी है जिसके बाहर एक बड़ी सी टीन लगी है देखो गिरील लगी हुई है।

बराबर में लोहे के जंगले भी लगे हुए हैं और नीले गुलाबी के कलर के गमले थमले भी है।